जहाँ पर हरे-हरे पौधे हैं आगे की ओर भी कुछ पेड़ बड़े-बड़े --

आगे की ओर कुछ सीढ़ी टाइप में दिखाई दे रहा है। ऊपर आसमा --

जिस-जिसके चारो तरफ --

वहाँ पर बहोत दुर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके आगे के थोड़े बाइक है।

और काले कलर की दिखाई दे रही है जिसके --

जहां पर कुछ खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

घर टाइप में दिखाई दे रहा है मुझे जी.के.जी.एस. लिखा हुआ --

दिखाई दे रहा है। जहां पर स्टील की कुछ सीलिंग्स लगी हुई दिखाई दे रही --

और वहाँ पर सफ़ेद कलर से पुता हुआ पीछे एक मकान टाइप में --

यहां पहाड़ियां क्षेत्र सोनपुर मेला दो हज़ार उन्नीस का --